योगा हो रहा है और योगा- महिलाएं योगा कर रही हैं।

तकरीजी शिक्षा छात्रों और छात्राओं को दी जाती है।

अस्पताल है डॉक्टर आलम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं।

और ये पूरी मंडी उसी की है।